यहाँ कुछ घर बने हुए हैं बंगलो बाहर एक कार खडी हुई है ऊपर आसमान है।

यह एक घर है यहाँ पर एक ए सी लगाया हुआ है।

पेड लगे हुए है समुद्र मै बहुत सारा पानी है उपर आसमान है नीचे बहुत सारी रेत है।

सामने दुकाने शॉप बनी हुई है वहा पर सामान रखा हुआ है ऊपर लाइट्स लगी हुई है ए_सी लगा हुआ है।